इस पिक्चर पर हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया गया हैं।

रेड कलर की बहोत सारी चेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं।

यहां दो बिल्डिंग सामने वाला व्हाइट कलर से पेंट किया गया है।

यहां पर बहोत सारे कुशन्स भी रखे हुए हैं सोफे पर।

इस जगह को व्हाइट कलर के रंग से पेंट किया गया है।

यहां पर बहुत सारे शख्स हमें देखने को मिल रहे हैं।

उसके सामने एक शख्स हमें बैठा नजर आ रहा है।

यहां पर दो बिस्तर व्हाइट कलर की बेडशीट लगाए रखे हुए हैं।

इस पिक्चर में हमें एक जगह दिखाया गया है जोकि ए_टी_एम एस_बी_आई का।

व्हीकल्स भी हमें देखने को मिल रहा है।

जगह को ब्लू कलर से पेंट किया गया है।

ऊपर में हमें नो स्मोकिंग साइन भी देखने को मिल रहा है।

पेड़ हमे साइड में देखने को भी मिल रहा--

यहां पे बहोत सारे इंसान हमे देखने को मिल रहे हैं।

कुर्सी और टेबल के ऊपर में हमें बहोत सारे टिशु और पानी बोतल देखने को मिल रहा है।

यहां में बहुत सारे अलग अलग कलर के वाशिंग मशीन्स देखने को मिल रहे है।

पिक्चर में हमे एक सुंदर सी बिल्डिंग दिखाई गई है।

बहोत सारे चीजें अच्छी तरीका से ऑर्गनाइज करके रखा हुआ हमें देखने को मिल रहा है।